और इससे इसकी जो सुंदरता है वो दुगुनी बढ़ गई है और इसकी जो क्वॉलिटी है वो भी बहोत ही प्यारा लग रहा--

और इसको देखने पे यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत लग रहा है।

नृत्य हो रहा है यह जो काम करने का तरीका है।

और बहुत ही प्रीमियम और यह हमेशा होना चाहिए।

ठंडी हवा जरूरी है क्योंकि यहां अपने लिए बहुत ही लाभदायी है।

यहां पर बहुत ही अच्छा सजाया गया है।